यह पर एक टॉवर है जो कि बोहोत ऊंचा है। यहाँ पर सभी नेटवर्क है। यहाँ इसी टॉवर से सभी के मोबाइल में नेटवर्क आता है।

यह बोहोत ही ऊंचा है इसके आस-पास बोहोत सारे पेड़ हैं और ये इसके बगल में एक बिजली का खंभा भी है।

यहाँ एक मार्केट है यहाँ एक टेम्पू है टेम्पू पर एक मशीन रखी हुई है और यह एक मशीन कहीं को किसी को --

के सामने खड़ा है यहाँ तीन है यहां पर बहुत ही सुंदर है इसका गेट भी बहुत अच्छी है।

यहाँ बहुत ही बड़ा पहाड़ है पहाड़ पे बहुत बड़े-बड़े पत्थर हैं यहाँ और यहाँ एक बहुत बड़ा झरना भी है।

यह बोहोत यह कमल के फूल की जल में भी खिलते हैं और यहाँ कीचड़ पर भी फूल खिले हुए हैं। यह बहुत ही खूबसूरत फूल है।

यहां सड़क पर एक बस है बस और बस पर बहोत लोग सवार हुए हैं। बस के ऊपर भी बहोत सवार है। रस्ता में पुलिस --

यह यूनियन बैंक है। यह बहुत ही अच्छा बैंक है। यहाँ पर पैसे अच्छे से डिपाजिट और निकल भी जाते हैं।

यह दुकान में एक लड़का नीचे खरीद रहा है। गाड़ी से --

पेड़ है। यह एक नारियल का पेड़ है और एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ है। यहाँ --

आज सभी व्यक्तियों को ईजी दामों पर बेच रहे हैं।

यह एक स्कूल है और यह अकादमी भी है। विक्रम सिंघ ट्यूटोरियल अकादेमी। इस अकादमी का नाम है।

यह एक बैंक है। इस बैंक का नाम आरती बैंक सेंटर है। यह चोबीसों घंटे खुली रहती है और साथ ही --

सेब की ढ़लिया रखी हुई हैं। पीछे चॉकलेट का भी स्टोर है। आगे अंगूर जामुन --

यह एक सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल का नाम सन सिटी सिनेमा है। यह बोहोत ही अच्छी सिनेमा हॉल है। यहाँ --

फनी एडवेंचर सभी मूवी दिखाई जाती है।

यह एक बोहोत ही कपड़े का दुकान हैं। यहाँ सभी ए न् महिलाएं की कपड़े मिल मिल जाती हैं। यहाँ गर्म करके पिए --

यह एक डिस्को क्लब है। यहां पर लोग नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं। यहां पर डिस्को लाइट जलाई जा रही है और नाच गान --

की जा रही है। यहाँ बहुत सारी लड़कियां नाच रही हैं और महिलाये भी नाच रही हैं और यहाँ बहुत --

यहाँ हर तरह के चावल मिलते हैं| बासमती चावल ताजमहल चावल --

ताजमहल चावल के तीन सौ पैतीस रुपए दाम हैं और --

यहाँ पर पेन पेंसिल चाकलेट बाल में लगाने वाली मेंहदी आदि सभी चीजें --